बिल्ट बिल्ट रेट मल्टी स्पे-स्पेशल अस्पताल लिखा हुआ है इसमें दांत किसीने दांत छपे हुए हैं यहाँ पर नीला कलर का पोस्टर अम नीला कलर का पोस्टर दिख रहा है।

यहाँ सामने एक सोफा रखा हुआ हे जो रेड और ब्लैक रेड और वाइट कलर का है यह देखने में दिलकशील लग रहा है।

एक इमारत दिखाई दे रही है जोकि है यहाँ पे नीचे फर्स दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है आगे में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे आज भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं कुछ लेडीजसे हैं यहां पर यहां पे आज भी पेड़-पौधें दिखाई दे रहे हैं देखने में दिल खुशी लग रहा --

यहाँ की बुक स्टोर दिखाई दे रही है यहाँ पर ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमे यश बुक लिखा हुआ है।

ओ दिखाई दे रा है जो भाइट कलर का है। यहाँ पर बाजु में एक कैड दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलड़ का है। यहाँ पर अ दीवाल सफ़ेद कलर से पुती हुई है।

चीज दिखाई दे रही है जिसमें एक चमच रखी हुई है ये देखने में लग रहा है नीचे टेबल दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।